सामने एक झोपड़ी से बनी हुई है। एक आदमी वहां खड़ा फोटो खिंचवा रहा है।

ये एक ऑफिस है सामने एक काउंटर बना हुआ है और एक चेयर लगी हुई है।

कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।

सीढ़ियां बनी हुई हैं साथ में ग्रिल भी लगी है।